एक सिटी कंपलेक्स है। सांवरिया बोर्ड लगा सांवरिया फैशन हाउस का बोर्ड लगा है। ड्रेस लैंड है बहोत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग में कांच लगे हुए है।

ए सी है। खम्भे हैं। नाला है। पत्तिंया हैं। पेड़ हैं। खंडहर है। मकान है। भवन है। नाला है। पानी है।